और उसका साथी उसके साथ दो मोटरसाइकिल भी लगा हुआ है साद किसी परिजन का मोटरसाइकिल हो ये।

जिसके चलते किसी आदमी का प्रवेश निषेद है।

किसी इस किसी स्कूल या फिर पार्क का बाहरी परिसर जहाँ पे --

मकान धिन माना धिन जगह जहाँ पे कुछ पिलर और पि पिलर के कुछ पिलर के ढांचे बने हुऐ है जो साथ में जिसके साथ में छड़ भी लगा हुआ है।